रेड कलर की यह स्कूल है लेकिन उसके बगल में एक बिल्डिंग है जो की वाइट कलर में हैं बहुत सारे गंदे हैं।

उसके बगल में दो चेयर है और एक व्हाइट स्कूटी है उसके ऊपर में एक ऐ_सी लगा हुआ है।

रेड कलर का चोल है उसके नीचे में ब्लैक कलर का शीशा लगा हुआ है।

यह एक कपड़े की दुकान है जहां पर चार कुर्सियां रखी हुई है।

पीला कलर में लगा हुआ है एक माला जो की के गेंदा फूल का है।

साइड में एक लेडिस फोन से बात कर रही है मास्क लगाकर।

उसकी बगल में लाइट लगा हुआ है।

नीचे में दो आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़े हैं उसके बाद एक स्टेचू है।

सामने समान रखा हुआ है कपड़े का और दो मूर्ति भी है ।

इसके आगे में एक औरत है और बगल में एक पंखा लगाया हुआ है जो कि रूम का गैस बाहर निकाला जाता है।

उसके आगे में एक आम का पेड़ है जोकि हरा भरा लग रहा है देखने में।

आगे में औरत भी है उसके ऊपर में पंखे चल रहे हैं बहुत सारे।

और सामने एक सीढी है जो वाइट कलर की है और दो लड़के जा रहे हैं।

एक लड़के पिला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और दूसरे लड़के ग्रे कलर में पहने हुए नीचे में जींस है जो कि खाली पैर में जा रहा है ।

ग्रीन विच स्कूल लिखा हुआ है।

पेड़ है और कंपाउंड घुमा हुआ है जो की वाइट ब्लू कलर में है जोकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने एक गेट है।